ये व्यक्ति यहां पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसने व्हाइट कलर की शर्ट टी शर्ट पहनी हुई है।

कुछ केक पिंक कलर के हैं तो कुछ येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं।

ये एक क्लीनिक के बाहर का क्लिक करा हुआ दृश्य है यहां पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है दांतों का अस्पताल।

देखने में ये गुरुद्वारा जैसा लग रहा है यहां पर काफी सारी घूमबद बनी हुई हैं।

नीचे की तरफ काफी सारे रंगीन में मैट पड़ी हुई दिख रही है।

दीवालों पर काफी सारे बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जो देखने में थोड़े थोड़े मेटल टाइप के ही लग रहे हैं।

यह एक जंगल का क्लिक करा हुआ दृश्य है यहां पर बहुत सारे हरे पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

कॉलेज के बाहर बी_ए बी_पी_डी लिखा हुआ है।

इस यहाँ पे एक कांच का गेट लगा हुआ है और उस गे गेट पर लिखा हुआ है फोर जी अंदर की तरफ एक व्हाइट कलर का काउंटर पड़ा हुआ है।

नीचे की तरफ काफी सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे निकले हुए दिखाई दे रहे हैं।